और एक स्कूल ग्राउंड जैसा लग रहा है जहां पर बहुत सारियां वैन खड़े हैं।

और उसके साइड में एक पेड़ है।

और यहां पर पहले राजा कर रहा करते थे अब एक म्यूजियम बन गया है।

कॉर्पोरेट ने इसे एक म्यूजियम बना गया है।

मेरे सामने जो फोटो है वह किसी रूरल एरिया का फोटो लग रहा है।

क्योंकि ज्यादातर रूलर एरिया में ऐसे सिंगल रोड होते है।

उन एक उनमें से एक दुकान के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है।

क्योंकि उस हाल के ऊपर में है कुछ लिखा हुआ है जिसे पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि यह एक वेडिंग हॉल है और इस वेडिंग हॉल को सजाया जा रहा है।

शायद यहां पर किसी की शादी होगी इसलिए इस मीटिंग इस वेडिंग हॉल को बहुत ही सुंदर से सजाया जा रहा है।

और एंबुलेंस ज्यादातर हॉस्पिटल के सा सामने ही खड़ी होती है।

जैसे बाइक ठीक करने वाली चीजें है और वगैरा वगैरा यहां पर हम एक बाइक भी देख सकते हैं जो की शायद ठीक करने के लिए रखा हुआ है।

और इनमें से एक कुछ लोग चारपाई पर बैठकर खाना खा रहे हैं।

और ये जो ढाबा है वे बेम्बू से बना हुआ है और येलो कलर का है।

मेरे सामने जो फोटो है वह किसी छत का फोटो लग रहा है।

ये किसी ने अपने छत के ऊपर जाकर बारिश के दिनों में ये फोटो खींची है।

मेरे सामने जो फोटो है वे एक हाईवे या फिर एक रोड का फोटो है जहां पर एक ऑटो रुका हुआ है।

बड़े लोग घूम रहे हैं और और कुछ दुकानदार अपने दुकान में कुछ बेच रहे हैं।

और एक बैलून का बैलून जैसा बना हुआ एक वैरायटी है।

और वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं।

यहां पर शायद लोग किसी काम से जा रहे हैं।

मेरे सामने जो फोटो है उसे देखकर मुझे लग रहा है कि एक मैकेनिक शॉप है या फिर अपना किसी का गैराज है।

और घर में एक दो तीन चार पांच छः सात आठ खिड़कियां है।

मेरे सामने जो फोटो है वे एक पेट्रोलियम का फोटो है।

और साइड में बहोत सारी टेबिल चेयर्स दिखाई दे रहे है।

उसके अंदर बाइक जैसा दिखाई दे रहा है।

आयरन के गेट का कलर पर्पल है और उसके ऊपर कुछ तो लिखा है शायद से उर्दू है।

मुझे इस फोटो में छह आदमी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लोग शायद से सीमेंट वर्कर हैं।

और ये लोग एक छत बना रहे है और इस छत में बहोत से रॉडे डली हुई है और ये लोग सीमेंट डालने का काम कर रहे है।

और यहां पर बहुत सी गाड़ियां भी है और यहां पर एक बंदा दिखाई दे रहा--

मेरे सामने जो फोटो है वह एक गौशाला का फोटो लग रहा है।

क्योंकि मुझे यहां पर एक नहीं बाकी एक दो दो गाय दिख रही है।

क्योंकि इसमें बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा थीम है।

और ये जो एयरपोर्ट है काफी सुंदर है।

यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ लड़कियां है।

ये जो फोटो है वे एक सैलून का फोटो है जिसके अंदर की ए_सी है और यहां पर लोगों के बाल काटते हैं।

और इस सलून का नाम राजधानी सलून है।

मुझे इस अलमीरा के अंदर बहुत सी चीजें दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक बड़ी सी ट्रक भी है।

अह बरिंदा के सामने एक खुले मैदान है और उसके साइड में एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

जहां पर ऊपर वाले फ्लोर पे लोग कपड़े सुखा रहे हैं।

यहां पर बहोत से फव्वारे भी है जहां से पानी निकल रहे--

यहां पर एक बच्चा उस पुतले के ऊपर बैठा हुआ है।

और दूसरा बस मे बैठने की कोशिश कर रहा है।

यहां पर मेरे सामने एक ओमनी खड़ी है जिसके पीछे एक आदमी है जिन्होंने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन रखा है।

मेरे हिसाब से बुड़ लोग का काम है कि लोगों की गाड़ी साफ करना।

इसमें एक ब्लू कलर की नांव है उसमें दो लोग खड़े होकर फोटोशूट कर रहे हैं।

स्कूल में जो बोर्ड है उसे पढ़ कर मुझे समझ आ रहा है कि ये जो स्कूल वे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है।